ये एस.बी.आई. का बैंक --

कांच में सब के रिफ्लेक्शन आ रहे है सब के अलग-अलग मेट है ।

ये एक सैलून की इमेज है जहां पे एक आदमी उस सैलून के मिरर से अपनी सेल्फी ले रहा है जो फेस पैक लगा के बैठा हुआ है ।

ये एक पेट्रोल पंप है जहां पे टोटो रखी हुई है ।

सीधा जा रही है एक तरफ में आ रही है दो-दो नाविक हैं ।

जो बोट को अपने नैया से पार लगा रहें हैं।

पूरा फ्यूचर का सामान है एक अलमारी भी हम लोग देख सकते हैं।

ये एक चर्च की तस्वीर है जहाँ सामने जीजस --

शीशे डिब्बो में चॉकलेट्स रखी हुई है ।

अलग-अलग किस्म के पलंग रखे हुए हैं यहाँ --

सड़क का कलर ग्रे जैस लग रहा है।

बाकि एरिया का जो ऊपर का कलर पूरा वाइट है। बॉर्डर पूरा रेड है।

टोटो का जो पहियाँ है वो भी पूरा ब्लैक कलर का है सामने का जो नंबर प्लेट लग रहा है वो भी येलो कलर का है।

किताबों का कलर भी किसी किताब कलर तरह ग्रीन है किसी की वाइट है यहाँ कॉपियां भी दिखाई दे रही --

जहाँ पर बहुत सारे शैम्पू के डिब्बे भी दिखाई दे रहे है तेल के डिब्बे भी दिखाई दे रहे है दाल दिखाई दे रही है चावल दिखाई दे रहे है कटिंग भी दिखाई दे रहे है ।

ए.टी.एम. के एक तरफ कांच है एक तरफ कुछ भी नहीं है।

एक यूथ दिखाई दे रहा है जिनकी शैडो दिखाई दे रहीं हैं।

सूर्य की व पानी अभी दिखाई दे रहा है पुरे अँधेरा-अँधेरा लग रहा है पर बहुत ही सुन्दर नज़ारा लग रहा है।

कुछ नौजवान भी औरत हैं कुछ पुरुष भी हैं जो मछली को खरीद रहे हैं ।

पत्ते दिख तो रहे हैं पर ये जमीन है वो थोडी सस --

पीछे का जो कर्टेन है वो ग्रीन कलर का है। बलून्स जो है पिंक पर्पल वाइट कलर का है।

इ एक बार्बी टॉय शॉप लग रहा है ज्यादे किस्म के टॉय है बोहोत सारे बार्बी है।

शोरूम की तरह है जहाँ पे अलग-अलग --

सब की पैकिंग दिखाई दे रही है दुकान थोड़ा पुराना लग रहा है पर सामान से भरा हुआ है ।

रोड बना हुआ है दोन एक बच्चा जो है ब्लैक कलर का --

सामने एक लाउंड्री सेंटर दिखाई दे रहा है जो लाल रंग की है बगल में स्कूटी है।

ये फल का दुकान है जहां पर अलग किस्म का फल है अंगूर है। एप्पल है।

और बोहोत सारे फल है टोकरी में है केला है केला के थाम है।